फ्रिज बोर्ड भी दिखाई दे रहा है।

इस फोतो में मुझे आदमियां दिखाई दे रहा है जोकि आग जला रहा है।

इस फोटो में मुझे बिल्डिंग दिख रहे हैं जो कि तीनों ग्रीन कलर में है।

सीमेंट से बना हुआ रास्ता भी दिख रहा है।

इस फोटो में मुझे वीरा दिख रहा है।

पंखा भी देख रहा है।

इक साइड में गाड़ी भी दिख रहा है।

इस फोटो में मुझे बहोत सारे घचिया दिखाई मिल रहा है।

व्हीलचेयर और एक आदमी निल दान करते हुए दिखाई दे रहा है।

तीन करके दिखाई दे रहा है।

मुझे इस फोटो में एक टेबल बेंच दिख रहा है जो से बना हुआ है।